भारी परिसर जहाँ पर बहुत सारे बांस के पेड़ हैं साथ में एक प्रतिमा या फिर इन्ही का समाधि स्थल लग रहा है जो कि बांस के पत्ते हरे-हरे लग रहे साथ में कुछ सूखे-सूखे पेड़ नजर आ रहे हैं।

मोबाइल टावर के नीचे से लिया गया तस्वीर जिसमें आसमान एकादम साफ और स्वच्छ दिख रहा दिख रहा है टेलीकॉम कंपनी किसी टेलीकॉम कंपनी का मोबाइल का टावर है।

स्टैंड है जहाँ बहुत सारे ऑटो खड़े ऑटो खड़े है और कुछ उस पे सवारी बैठे है साथ में बीच में बीच वाला मध्य बीच वाला ऑटो बीच वाला ऑटो कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गया है।

शहर का एक व्यवस्तम इलाका या फिर एक बस स्टैंड जहाँ पर काफी तरह का जल-जमाव हैं जिसमें कुछ भैंस इधर-उधर टहल रही हैं साथ में दूर खराब सड़क पर कार गुजर रही हैं इस ठीक खराब सड़क --